यहाँ पे देखिये ढ़ेर सारा स्कूलीया बस है और कार भी ढ़ेर सारा है देखने में काफी सुंदर लगता है और पुरानी बस --

देखने मे बहुत अच्छा है यहां पे लोग जाते-आते रहते है एक आदमी के हाथ मे झो झोला है आ रहा है उधर से देखिए कितना खूबसूरत है।

यहाँ पे देखिए कितना बड़ा लगता है पोखर है दिखने मे काफी सुंदर लगता है पहाड़ी इलाका है और दिखने मे काफी खूबसूरत है।